इस पर इस पार्क में लाइट्स लगे हुए हैं।

यहां पे एक आदमी वर्कआउट कर रहा है।

ऊपर रेड कलर के जिम आइटम्स है।

एक अपार्टमेंट नजर आ रहा है अह अपार्टमेंट के बाहर पार्किंग एरिया नजर आ रहा है इस पर रेड मेहरून ब्लू कलर के कार्स हैं।

इस अपार्टमेंट में ए_सी लगा हुआ है।

इस चित्र में एक चर्च नजर आ रहा है।

एक शॉपिंग मॉल नजर आ रहा है।

चित्र में शॉपिंग मॉल नजर आ रहा है।

चित्र में एक लाइब्रेरी नजर आ रही है।

इसमें कुछ जिम के आइटम्स है और इसमें एक पुरुष दो पुरुष खड़े हुए है।

इस चित्र में एक छोटा सा रेनफॉल है।

इसमें झाड़े हैं यह पार्क लग रहा है।

इस इस चित्र में टेंपल नजर आ रहा है एक त्रिशूल है।

दो लोग बैठे हुए हैं चेयर पे और वो दो लोग फोन पे फोन इस्तेमाल कर रहे हैं।

एक गुहा लग रहा है इसमें एक आदमी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है।

वह बाइक जोन है यहां पर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ--

एक ज्वेलरी शॉप नजर आ रहा है।

यहां पर ज्वेलरी है कुछ ज्वेलरी सइ--

ये एक छत का नजारा नजर आ रहा है।

ये एक सनसेट एरिया नजर आ रहा है।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

आ ब बिल्डिंग के बाहर तीन लोग बैठे हुए हैं चेयर्स पर।

एक सिनेमा हॉल नजर आ रहा है।

रेड और ब्लैक कलर के चेयर्स हैं।

ये एक पहाड़ नजर आ रहा है।

ये एक घूमने का एरिया नजर आ रहा है।

एक मॉल का पार्किंग एरिया नजर आ रहा है यहां पर व्हाईट कलर की कार ठहरी हुई है।

यहां पर दो आदमी जा रहे हैं।

इस चित्र में पराठा नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक पहाड़ नजर आ रहा है।

कुछ राजा महाराजा जैसा महल नजर आ रहा है।

इस चित्र में बड़ा सा बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक टेंपल नजर आ रहा है।

साइड वाल्स व्हाइट एंड ब्लू कलर के हैं।

इस पर बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक आदमी वर्कआउट कर रहा है।

एक टेंपल का चित्र नजर आ रहा है।

ये एक पहाड़ी एरिया नजर आ रहा--

ये एक हॉकी ग्राउंड नजर आ रहा है।

दो चार आदमी खेल रहे हैं हाथ में हॉकी बैट है साइड में बेंचेज है और इसका फर्श ग्रीन है और इसका टेंट ब्लू कलर का है।

यहां पर एक तीन लोग बैठे हुए हैं कि एक लोग बैठा एक आदमी बैठा हुआ है।

वाइट कलर का बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

और यहां पर एक रोड नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक टेंपल नजर आ रहा है।

साइड में भी कुछ भगवान के चित्र लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक पार्क नजर आ रहा है।

इसमें बच्चे खेलने का स्लैम्प लगा हुआ है वो स्लैम्प ब्लू कलर और रेड कलर और ग्रीन कलर का है।

ये एक शॉपिंग मॉल है साड़ी सेंटर ।

इस चित्र में दो आदमी ठहरे हुए हैं।

यहां पर एक पेटीएम का बोर्ड लगा हुआ है वोडाफोन का बोर्ड लगा हुआ है।